मेरे प्यारे देशवासियोनमस्कार
मन की बात में एक बार फिर आप सभी का बहुतबहुत स्वागत है
इस बार मन की बात का ये एपिसोड 2nd सेंचुरी का प्रारंभ है
पिछले महीने हम सभी ने इसकी स्पेशियल सेंचुरी को सेलिब्रेट किया है
आपकी भागीदारी ही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी ताकत है
100वें एपिसोड के ब्रॉडकास्ट के समय एक प्रकार से पूरा देश एक सूत्र में बंध गया था
हमारे सफाईकर्मी भाईबहन हों या फिर अलगअलग सेक्टर्स के दिग्गज मन की बात ने सबको एक साथ लाने का काम किया है
आप सभी ने जो आत्मीयता और स्नेह मन की बात के लिए दिखाया है वो अभूतपूर्व है भावुक कर देने वाला है
जब मन की बात का प्रसारण हुआ तो उस समय दुनिया के अलगअलग देशों में अलगअलग टाइम ज़ोन में कहीं शाम हो रही थी तो कहीं देर रात थी इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने 100वें एपिसोड को सुनने के लिए समय निकाला
मैंने हजारों मील दूर न्यू जीलैंड का वो विडियो भी देखा जिसमें 100 वर्ष की एक माताजी अपना आशीर्वाद दे रही हैं
मन की बात को लेकर देशविदेश के लोगों ने अपने विचार रखे हैं
बहुत सारे लोगों ने कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस भी किया है
लोगों ने इस बात को एप्रिशिएट किया है कि मन की बात में देश और देशवासियो की उपलब्धियों की ही चर्चा होती है
मैं एक बार फिर आप सभी को इस आशीर्वाद के लिए पूरे आदर के साथ धन्यवाद देता हूं
मेरे प्यारे देशवासियो बीते दिनों हमने मन की बात में काशी तमिल संगमम की बात की सौराष्ट्रतमिल संगमम की बात की
कुछ समय पहले ही वाराणसी में काशीतेलुगू संगमम भी हुआ
एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को ताकत देने वाला ऐसे ही एक और अनूठा प्रयास देश में हुआ है
ये प्रयास है युवा संगम का
मैंने सोचा इस बारे में विस्तार से क्यों न उन्हीं लोगों से पूछा जाए जो इस अनूठे प्रयास का हिस्सा रहे हैं
इसलिए अभी मेरे साथ फ़ोन पर दो युवा जुड़े हुए हैं एक हैं अरुणाचल प्रदेश के ग्यामर न्योकुम जी और दूसरी बेटी है बिहार की बिटिया विशाखा सिंह जी
आइए पहले हम ग्यामर न्योकुम से बात करते हैं
ग्यामर जी नमस्ते
नमस्ते मोदी जी
अच्छा ग्यामर जी जरा सबसे पहले तो मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ
मोदी जी सबसे पहले तो मैं आपका और भारत सरकार का बहुत ही ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत कीमती टाइम निकाल के मुझ से बात करने का मुझे मौका दिया मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ओएफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट यियर में मेकेनिकल इंजिनियरिंग में पढ़ रहा हूँ
और परिवार में क्या करते हैं पिताजी वगैरह
जी मेरे पिताजी छोटे मोटे बिजनेस और उसके बाद कुछ फार्मिंग में सब करते हैं
युवा संगम के लिए आपको पता कैसे चला युवा संगम में गए कहाँ कैसे गए क्या हुआ
मोदी जी मुझे युवा संगम का हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं जो नित हैं उन्होंने हमें बताया था कि आप इसमें भाग ले सकते हैं
तो मैंने फिर थोड़ा इंटरनेट में खोज किया फिर मुझे पता चला कि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसने मुझे एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो visionहै उसमें भी बहुत ही योगदान दे सकते हैं और मुझे कुछ नया चीज़ जानने का मौका मिलेगा ना तो तुरंत मैंने फिर उसमें वेबसाइट में जाके एनरोल किया
मेरा अनुभव बहुत ही मजेदार रहा बहुत ही अच्छा था
कोई सिलेक्शन आप को करना था
मोदी जी जब वेबसाइट खोला था तो अरुणाचल वालों के लिए दो आप्शन था
पहला था आँध्रप्रदेश जिसमें ईआईटी तिरुपति था और दूसरा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान तो मैंने राजस्थान में किया था अपना फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस मैंने ईआईटी तिरुपति किया था
तो मुझे राजस्थान के लिए सिलेक्ट हुआ था
तो मैं राजस्थान गया था
कैसा रहा आपका राजस्थान यात्रा आप पहली बार राजस्थान गए थे
हाँ मैं पहली बार अरुणाचल से बाहर गया था मैंने तो जो राजस्थान के किले ये सब तो मैंने बस फिल्म और फ़ोन में ही देखा था न तो मैंने जब पहली बार गया तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही वहां के लोग बहुत ही अच्छे थे और जो हमें treatmentदिया बहुत ही ज्यादा अच्छे थे
क्या हमें नयानया चीज़ सीखने को मिला मुझे राजस्थान के बड़े झील और उधर के लोग जैसे कि रैन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत कुछ नयानया चीज़ सीखने को मिला जो मुझे बिलकुल ही मालूम नहीं था तो ये प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छा था राजस्थान का visit
देखिये आपको तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अरुणाचल में भी वीरों की भूमि है राजस्थान भी वीरों की भूमि है और राजस्थान से सेना में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं और अरुणाचल में सीमा पर जो सैनिक हैं उसमें जब भी राजस्थान के लोग मिलेंगे तो आप जरुर उनसे बात करेंगे कि देखियेमैं राजस्थान गया था ऐसा अनुभव था तो आपकी तो निकटता एकदम से बढ़ जाएगी
अच्छा आपको वहां कोई समानताएं भी ध्यान में आई होगी आपको लगता होगा हां यार ये अरुणाचल में भी तो ऐसा ही है
मोदी जी मुझे जो एक समानता मुझे मिली न वो थी कि जो देश प्रेम है नाऔर जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो विजन और जो फीलिंग जो मुझे देखा क्योंकि अरुणाचल में भी लोग अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि वो भारतीय हैं इसलिये और राजस्थान में भी लोग अपनी मातृ भूमि के लिए बहुत जो गर्व महसूस होता है वो चीज़ मुझे बहुत ही ज्यादा नज़र आया और स्पेशली जो युवा पीढ़ी है ना क्योंकि मैंने उधर में बहुत सारे युवा के साथ इंटरैक्ट और बातचीत किया ना तो वो चीज़ जो मुझे बहुत सिमिलारिटी नज़र आया जो वो चाहते हैं कि भारत के लिए जो कुछ करने का और जो अपने देश के लिए प्रेम है ना वो चीज़ मुझे बहुत ही दोनों ही राज्यों में बहुत ही सिमिलारिटी नज़र आया
तो वहां जो मित्र मिले हैं उनसे परिचय बढ़ाया कि आकर के भूल गए
नहीं हमने बढ़ाया परिचय किया
हाँ तो आप सोशल मीडिया में एक्टिव है
जी मोदी जी मैं एक्टिव हूँ
तो आपने ब्लॉग लिखना चाहिए अपना ये युवा संगम का अनुभव कैसा रहा आपने उसमें एनरोल कैसे किया राजस्थान में अनुभव कैसा रहा ताकि देशभर के युवाओं को पता चले कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का माहात्मय क्या है ये योजना क्या है उसका फायदा युवक कैसे ले सकते हैं पूरा अपने एक्सपीरियंस का ब्लॉग लिखना चाहिए तो बहुत लोगों को पढ़ने के लिए काम आयेगा
जी मैं जरुर करूँगा
ग्यामर जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके और आप सब युवा देश के लिए देश के उज्जवल भविष्य के लिए क्योंकि ये 25 साल अत्यंत महत्वपूर्ण हैं आपके जीवन के भी और देश के जीवन के भी तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है धन्यवाद
धन्यवाद मोदी जी आपको भी
नमस्कार भईया
साथियो अरुणाचल के लोग इतनी आत्मीयता से भरे होते हैं कि उनसे बात करते हुए मुझे बहुत आनंद आता है
युवा संगम में ग्यामर जी का अनुभव तो बेहतरीन रहा
आइये अब बिहार की बेटी विशाखा सिंह जी से बात करते हैं
विशाखा जी नमस्कार
सर्वप्रथम तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी कोमेरा प्रणाम और मेरे साथ सभी डेलीगेट्स की तरफ़ से आप को बहुतबहुत प्रणाम
अच्छा विशाखा जी पहले अपने बारे में बताइए
फिर मुझे युवा संगम के विषय में भी जानना है
मैं बिहार के सासाराम नाम के शहर की निवासी हूँ और मुझे युवा संगम के बारे में मेरे कॉलेज के WhatsApp ग्रुप के मेसेज के थ्राउघ पता चला था सबसे पहले
तो उसके बाद फिर मैंने पता करा इसके बारे में और डिटेल निकाली कि ये क्या है तो मुझे पता चला कि ये प्रधानमंत्री जी की एक शीम एक भारतश्रेष्ठ भारत के थ्राउघ युवा संगम है
तो उसके बाद मैंने एप्ली करा और जब मैंने एप्ली करा तो मैं एक्साइटेड थी इससे जोइन होने के लिए लेकिन जब वहाँ से घूम के तमिलनाडु जा के वापस आई
वो जो एक्सपोजर मैंने गैन किया उसके बाद मुझे अभी बहुत ज्यादा ऐसा प्राउड फील होता है थाट आई हेव बीन थे पार्ट ओएफ थिस प्रोग्राम तो मुझे बहुत ही ज्यादा ख़ुशी है उस प्रोग्राम में पार्ट लेने की और मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आपका कि आपने हमारे जैसे युवाओं के लिए इतना बेहतरीन प्रोग्राम बनाया जिससे हम भारत के विभिन्न भागों के कल्चर को अदप्त कर सकते हैं
विशाखा जी आप क्या पढ़ती हैं
मैं कम्प्यूटर साइंस इंजिनियरिंग की सेकंड यियर की छात्रा हूँ
अच्छा विशाखा जी आपने किस राज्य में जाना है कहाँ जुड़ना है वो निर्णय कैसे किया
जब मैंने ये युवा संगम के बारे में सर्च करना शुरू किया गूगल पर तभी मुझे पता चल गया था कि बिहार के डेलीगेट्स को तमिलनाडु के डेलीगेट्स के साथ एक्सचेंज किया जा रहा है
तमिलनाडु काफी रिच कल्चरल स्टेट है हमारे कंट्री का तो उस टाइम भी जब मैंने ये जाना ये देखा कि बिहार वालों को तमिलनाडु भेजा जा रहा है तो इसने भी मुझे बहुत ज्यादा मदद किया ये डिसाइजन लेने में कि मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए वहाँ जाना चाहिए या नहीं और मैं सच में आज बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैंने इसमें पार्ट लिया और मुझे बहुत खुशी है
आपका पहली बार जाना हुआ तमिलनाडु
जी मैं पहली बार गई थी
अच्छा कोई ख़ास यादगार चीज अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगें देश के युवा सुन रहें हैं आपको
जी पूरा जर्नी ही माने तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहा है
एकएक पड़ाव पर हमने बहुत ही अच्छी चीजें सीखी हैं
मैंने तमिलनाडु में जाके अच्छे दोस्त बनाए हैं
वहाँ के कल्चर को अदप्त किया है
वहाँ के लोगों से मिली मैं
लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो मुझे लगी वहाँ पे वो पहली चीज़ तो ये कि किसी को भी मौका नहीं मिलता है इसरो में जाने का और हम डेलीगेट्स थे तो हमें ये मौका मिला था कि हम इसरो में जाएँPlus दूसरी बात सबसे अच्छी थी वो जब हम राजभवन में गए और हम तमिलनाडु के राज्यपाल जी से मिले
तो वो दो मोमेंट जो था वो मेरे लिए काफी सही था और मुझे ऐसा लगता है कि जिस एजीई में हम हैंas आ यूथ हमें वो मौका नहीं मिल पाता जोकि युवा संगम के थ्राउघ मिला है
तो ये काफ़ी सही और सबसे यादगार मोमेंट था मेरे लिए
बिहार में तो खाने का तरीका अलग है तमिलनाडु में खाने का तरीका अलग है
तो वो सेट हो गया था पूरी तरह
वहाँ जब हम लोग गए थे तो साउथ इंडियन क्यूजिन है वहाँ पे तमिलनाडु में
तो जैसे ही हम लोग गए थे तो वहाँ जाते के साथ हमें डोसा इडली सांभर उत्तपम वड़ा उपमा ये सब सर्व किया गया था
तो पहले जब हमने ट्राय करा तो थाट वास टू goodवहाँ का खाना जो है वो बहुत ही हेल्थी है एक्चुअली बहुत ही ज्यादा तस्ते में भी बेहतरीन है और हमारे नॉर्थ के खाने से बहुत ही ज्यादा अलग है तो मुझे वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा लगा और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लगे
तो अब तो दोस्त भी बन गए होंगे तमिलनाडु में
जी जी वहाँ पर हम रुके थे नित Trichyमें उसके बाद ईआईटी मद्रास में तो उन दोनों जगह के स्टूडेंट्स से तो मेरी दोस्ती हो गई है
Plus बीच में एक सीआईआई का वेलकम सेरेमनी था तो वहां पे वहाँ के आसपास के कॉलेज के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आये थे
तो वहाँ हमने उन स्टूडेंट्स से भी इंटरैक्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोगों से मिल के काफ़ी लोग तो मेरे दोस्त भी हैं
और कुछ डेलीगेट से भी मिले थे जो तमिलनाडु के डेलीगेट बिहार आ रहे थे तो हमारी बातचीत उनसे भी हुई थी और हम अभी भी आपस में बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है
तो विशाखा जी आप एक ब्लॉग लिखिए और सोशल मीडिया पर ये आपको पूरा अनुभव एक तो इस युवा संगम का फिर एक भारतश्रेष्ठ भारत का और फिर तमिलनाडु में अपनापन जो मिला जो आपको स्वागतसत्कार हुआ
तमिल लोगों का प्यार मिला ये सारी चीजें देश को बताइये आप
तो लिखोगी आप
जी जरुर
तो मेरी तरफ़ से आपको बहुत शुभकामना है और बहुतबहुत धन्यवाद
जी थांक यू सो much
ग्यामर और विशाखा आपको मेरी बहुतबहुत शुभकामनाएं
युवा संगम में आपने जो सीखा है वो जीवनपर्यंत आपके साथ रहे
यही मेरी आप सबके प्रति शुभकामना है
साथियो भारत की शक्ति इसकी विविधता में है
हमारे देश में देखने के लिए बहुत कुछ है
इसी को देखते हुए एड्यूकेशन मिनिस्ट्री ने युवासंगम नाम से एक बेहतरीन पहल की है
इस पहल का उद्देश्य पियोपल टो पियोपल कनेक्ट बढ़ाने के साथ ही देश के युवाओं को आपस में घुलनेमिलने का मौका देना
विभिन्न राज्यों के उच्च शिक्षा संस्थानों को इससे जोड़ा गया है
युवासंगम में युवा दूसरे राज्यों के शहरों और गावों में जाते हैं उन्हें अलगअलग तरह के लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है
युवासंगम के फर्स्ट राउंड में लगभग 1200 युवा देश के 22 राज्यों का दौरा कर चुके हैं
जो भी युवा इसका हिस्सा बने हैं वे अपने साथ ऐसी यादें लेकर वापस लौट रहे हैं जो जीवनभर उनके ह्रदय में बसी रहेंगी
हमने देखा है किकई बड़ी कंपनियों के सीईओ बिजनेस लीडर्स उन्होंने बैगपैकर्स की तरह भारत में समय गुजारा है
मैं जब दूसरे देशों के लीडर्स से मिलता हूँ तो कई बार वो भी बताते हैं कि वो अपनी युवावस्था में भारत घूमने के लिए गए थे
हमारे भारत में इतना कुछ जानने और देखने के लिए है कि आपकी उत्सुकता हर बार बढ़ती ही जाएगी
मुझे उम्मीद है कि इन रोमांचक अनुभवों को जानकर आप भी देश के अलगअलग हिस्सों की यात्रा के लिए जरुर प्रेरित होंगे
मेरे प्यारे देशवासियो कुछ दिन पहले ही मैं जापान में हिरोशिमा में था
वहां मुझे हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम में जाने का अवसर मिला
ये एक भावुक कर देने वाला अनुभव था
जब हम इतिहास की यादों को संजोकर रखते हैं तो वो आने वाली पीढ़ियों की बहुत मदद करता है
कई बार म्यूजियम में हमें नए सबक मिलते हैं तो कई बार हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है
कुछ दिन पहले ही भारत में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का भी आयोजन किया था
इसमें दुनिया के 1200 से अधिक Museumsकी विशेषताओं को दर्शाया गया
हमारे यहां भारत में अलगअलग प्रकार के ऐसे कई म्यूजियम्स हैं जो हमारे अतीत से जुड़े अनेक पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं जैसे गुरुग्राम में एक अनोखा संग्रहालय है म्यूजियो कैमेरा इसमें 1860 के बाद के 8 हजार से ज्यादा कैमरों का कलेक्शन मौजूद है
तमिलनाडु के म्यूजियम ओएफ पॉसिबिलिटीज को हमारे दिव्यांगजनों को ध्यान में रखकरdesign किया गया है
मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय एक ऐसा म्यूजियम है जिसमें 70 हजार से भी अधिक चीजेंसंरक्षित की गई हैं
साल 2010 में स्थापित इंडियन मेमोरी प्रोजेक्ट एक तरह का ओनलाइन म्यूजियम है
ये जो दुनियाभर से भेजी गयी तस्वीरों और कहानियों के माध्यम से भारत के गौरवशाली इतिहास की कड़ियों को जोड़ने में जुटा है
विभाजन की विभिषिका से जुड़ी स्मृतियों को भी सामने लाने का प्रयास किया गया है
बीते वर्षों में भी हमने भारत में नएनए तरह के म्यूजियम और मेमोरियल बनते देखे हैं
स्वाधीनता संग्राम में आदिवासी भाईबहनों के योगदान को समर्पित 10 नए म्यूजियम बनाए जा रहे हैं
कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में बिप्लोबी भारत गैलरी हो या फिर जलियावालां बाग मेमोरियल का पुनुरुद्धारदेश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित पीएम म्यूजियम भी आज दिल्ली की शोभा बढ़ा रहा है
दिल्ली में ही नेशनल वार मेमोरियल और पोलिस मेमोरियल में हर रोज अनेकों लोग शहीदों को नमन करने आते हैं
ऐतिहासिक दांडी यात्रा को समर्पित दांडी मेमोरियल हो या फिर स्टेच्यू ओएफ यूनिटी म्यूजियम खैर मुझे यहीं रुक जाना पड़ेगा क्योंकि देशभर में Museumsकी लिस्ट काफ़ी लम्बी है और पहली बार देश में सभी म्यूजियम्स के बारे में जरुरी जानकारियों को कंपाइल भी किया गया है
म्यूजियम किस थीम पर आधारित है वहाँ किस तरह की वस्तुएं रखी हैं वहां की कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है ये सब कुछ एक ओनलाइन डायरेक्ट्री में समाहित है
मेरा आपसे आग्रह है कि आपको जब भी मौका मिले अपने देश के इन म्यूजियम्स को देखने जरुर जाएँ
आप वहां की आकर्षक तस्वीरों को हैश्टैगम्यूजियम मेमोरीज पर शेयर करना भी ना भूलें
इससे अपनी वैभवशाली संस्कृति के साथ हम भारतीयों का जुड़ाव और मजबूत होगा
मेरे प्यारे देशवासियो हम सबने एक कहावत कई बार सुनी होगी बारबार सुनी होगी बिन पानी सब सून
बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है व्यक्ति और देश का विकास भी ठप्प पड़ जाता है
भविष्य की इसी चुनौती को देखते हुए आज देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है
हमारे अमृत सरोवर इसलिए विशेष हैं क्योंकि ये आजादी के अमृत काल में बन रहे हैं और इसमें लोगों का अमृत प्रयास लगा है
आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अब तक 50 हजार से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण भी हो चुका है
ये जल संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है
साथियो हम हर गर्मी में इसी तरह पानी से जुड़ी चुनौतियों के बारे में बात करते रहते हैं
इस बार भी हम इस विषय को लेंगे लेकिन इस बार चर्चा करेंगे जल संरक्षण से जुड़े स्टार्टअप्स की
एक स्टार्टअप है FluxGen
ये स्टार्टअप आईओटी इनेबल्ड तकनीक के जरिए वाटर मैनेजमेंट के विकल्प देता है
ये टेक्नोलॉजी पानी के इस्तेमाल के पैटर्न्स बताएगा और पानी के प्रभावी इस्तेमाल में मदद करेगा
एक और startupहैLivNSense
ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित प्लैटफार्म है
इसकी मदद से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी
इससे ये भी पता चल सकेगा कि कहाँ कितना पानी बर्बाद हो रहा है
एक और स्टार्टअप है कुंभी कागज कुंभिकागज़
ये कुंभी कागज कुंभिकागज़ एक ऐसा विषय है मुझे पक्का विश्वास है आपको भी बहुत पसंद आएगा
कुंभी कागज कुंभिकागज़ स्टार्टअप उसने एक विशेष काम शुरू किया है
वे जलकुंभी से कागज बनाने का काम कर रहे हैं यानी जो जलकुंभी कभी जलस्त्रोतों के लिए एक समस्या समझी जाती थी उसी से अब कागज बनने लगा है
साथियो कई युवा अगर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के जरिए काम कर रहे हैं तो कई युवा ऐसे भी हैं जो समाज को जागरूक करने के मिशन में भी लगे हुए हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के युवा हैं
यहाँ के युवाओं ने पानी बचाने के लिए एक अभियान शुरु किया है
ये घरघर जाकर लोगों को जलसंरक्षण के लिए जागरूक करते हैं
कहीं शादीब्याह जैसा कोई आयोजन होता है तो युवाओं का ये groupवहाँ जाकर पानी का दुरूपयोग कैसे रोका जा सकता है इसकी जानकारी देता है
पानी के सदुपयोग से जुड़ा एक प्रेरक प्रयास झारखंड के खूंटी जिले में भी हो रहा है
खूंटी में लोगों ने पानी के संकट से निपटने के लिए बोरी बाँध का रास्ता निकाला है
बोरी बांध से पानी इकट्ठा होने के कारण यहाँ सागसब्जियाँ भी पैदा होने लगी हैं
इससे लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है और इलाके की जरूरतें भी पूरी हो रहीं हैं
जनभागीदारी का कोई भी प्रयास कैसे कई बदलावों को साथ लेकर आता है खूंटी इसका एक आकर्षक उदाहरण बन गया है
मैं यहाँ के लोगों को इस प्रयास के लिए बहुतबहुत बधाई देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो 1965 के युद्ध के समय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था
बाद में अटल जी ने इसमें जय विज्ञान भी जोड़ दिया था
कुछ वर्ष पहले देश के वैज्ञानिकों से बात करते हुए मैंने जय अनुसंधान की बात की थी
मन की बात में आज बात एक ऐसे व्यक्ति की एक ऐसी संस्था की जो जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान इन चारों का ही प्रतिबिंब है
ये सज्जन हैं महाराष्ट्र के श्रीमान् शिवाजी शामराव डोले जी
शिवाजी डोले नासिक जिले के एक छोटे से गाँव के रहने वाले हैं
वो गरीब आदिवासी किसान परिवार से आते हैं और एक पूर्व सैनिक भी हैं
फौज में रहते हुए उन्होंने अपना जीवन देश के लिए लगाया
Retire होने के बाद उन्होंने कुछ नया सीखने का फैसला किया और एग्रीकल्चर में डिप्लोमा किया यानीवो जय जवान से जय किसान की तरफ बढ़ चले
अब हर पल उनकी कोशिश यही रहती है कि कैसे कृषि क्षेत्र में अपना अधिक से अधिक योगदान दें
अपने इस अभियान में शिवाजी डोले जी ने 20 लोगों की एक छोटीसी टीम बनाई और कुछ पूर्व सैनिकों को भी इसमें जोड़ा
इसके बाद उनकी इस टीम ने वेंकटेश्वर कोआपरेटिव पॉवर एग्रो प्रोसेसिंग Limitedनाम की एक सहकारी संस्था का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया
ये सहकारी संस्था निष्क्रिय पड़ी थी जिसे रिवाइव करने का बीड़ा उन्होंने उठाया
देखते ही देखते आज वेंकटेश्वर कोआपरेटिव का विस्तार कई जिलों में हो गया है
आज ये टीम महाराष्ट्र और कर्नाटका में काम कर रही है
इससे करीब 18 हजार लोग जुड़े हैं जिनमें काफी संख्या में हमारे एक्ससर्विसमें भी हैं
नासिक के मालेगाँव में इस टीम के सदस्य 500 एकड़ से ज्यादा जमीन में एग्रो फार्मिंग कर रहे हैं
ये टीम जल संरक्षण के लिए भी कई तालाब भी बनवाने में जुटी है
खास बात यह है कि इन्होंने आर्गेनिक फार्मिंग और डैरी भी शुरू की है
अब इनके उगाए अंगूरों को यूरोप में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है
इस टीम की जो दो बड़ी विशेषतायें हैं जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया है वो ये है जय विज्ञान और जय अनुसंधान
इसके सदस्य टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एग्रो प्रैक्टिस का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं
दूसरी विशेषता ये है कि वे एक्सपोर्ट के लिए जरुरी कई तरह के सर्टिफिकेशंस पर भी फोकस कर रहे हैं
सहकार से समृद्धि की भावना के साथ काम कर रही इस टीम की मैं सराहना करता हूँ
इस प्रयास से ना सिर्फ बड़ी संख्या में लोगों का सशक्तिकरण हुआ है बल्कि आजीविका के अनेक साधन भी बने हैं
मुझे उम्मीद है कि यह प्रयास मन की बात के हर श्रोता को प्रेरित करेगा
मेरे प्यारे देशवासियो आज 28 मई को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की जयंती है
उनके त्याग साहस और संकल्पशक्ति से जुड़ी गाथाएँ आज भी हम सबको प्रेरित करती हैं
मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब मैं अंडमान में उस कोठरी में गया था जहाँ वीर सावरकर ने कालापानी की सजा काटी थी
वीर सावरकर का व्यक्तित्व दृढ़ता और विशालता से समाहित था
उनके निर्भीक और स्वाभिमानी स्वाभाव को गुलामी की मानसिकता बिल्कुल भी रास नहीं आती थी
स्वतंत्रता आंदोलन ही नहीं सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए भी वीर सावरकर ने जितना कुछ किया उसे आज भी याद किया जाता है
साथियो कुछ दिन बाद 4 जून को संत कबीरदास जी की भी जयंती है
कबीरदास जी ने जो मार्ग हमें दिखायाहै वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है
कबीरदास जी कहते थे
कबीरा कुआँ एक है पानी भरे अनेक
बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक
यानीकुएं पर भले भिन्नभिन्न तरह के लोग पानी भरने आए लेकिन कुआँ किसी में भेद नहीं करता पानी तो सभी बर्तनों में एक ही होता है
संत कबीर ने समाज को बांटने वाली हर कुप्रथा का विरोध किया समाज को जागृत करने का प्रयास किया
आज जब देश विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है तो हमें संत कबीर से प्रेरणा लेते हुए समाज को सशक्त करने के अपने प्रयास और बढ़ाने चाहिए
मेरे प्यारे देशवासियो अब मैं आपसे देश की एक ऐसी महान हस्ती के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जिन्होंने राजनीति और फिल्म जगत में अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल पर अमिट छाप छोड़ी
इस महान हस्ती का नाम है एनटी रामाराव जिन्हें हम सभी एनटीआरNTR के नाम से भी जानते हैं
आज एनटीआर की 100वीं जयंती है
अपनी बहुमुखी प्रतिभा के बल पर वो न सिर्फ तेलुगु सिनेमा के महानायक बने बल्कि उन्होंने करोड़ो लोगों का दिल भी जीता
क्या आपको मालूम है कि उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया था उन्होंने कई ऐतिहासिक पात्रों को अपने अभिनय के दम पर फिर से जीवंत कर दिया था
भगवान कृष्ण राम और ऐसी कई अन्य भूमिकाओं में एनटीआर की एक्टिंग को लोगों ने इतना पसंद किया कि लोग उन्हें आज भी याद करते हैं
एनटीआर ने सिनेमा जगत के साथसाथ राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बनाई थी
यहाँभी उन्हें लोगों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिला
देशदुनिया में लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले एनटी रामाराव जी को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो मन की बात में इस बार इतना ही
अगली बार कुछ नए विषयों के साथ आपके बीच आऊँगा तब तक कुछ इलाकों में गर्मी और ज्यादा बढ़ चुकी होगी
कहींकहीं पर बारिश भी शुरू हो जाएगी
आपको मौसम की हर परिस्थिति में अपनी सेहत का ध्यान रखना है
21 जून को हम वर्ल्ड योगा डे भी मनाएंगे
उसकी भी देशविदेश में तैयारियां चल रही हैं
आप इन तैयारियों के बारे में भी अपने मन की बात मुझे लिखते रहिए
किसी और विषय पर कोई और जानकारी अगर आपको मिले तो वो भी मुझे बताइयेगा
मेरा प्रयास ज्यादा से ज्यादा सुझावों को मन की बात में लेने का रहेगा
एक बार फिर आप सभी का बहुतबहुत धन्यवाद
अब मिलेंगे अगले महीने तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए